यह बजन तौलने की मशीन है।

और कुछ सफ़ेद रंग का टेग लगा हुआ है।

यहाँ पे टेबल का रंग लाल है यहाँ पे एक चश्मा और दस्ती रखी हुई है।

यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पास में ही यहाँ पर एक कुर्सी अ दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक पुस्तकालय जैसे दिखाई दे रहा है।